लोहे का बॉक्स बना पड़ा है। उसके पीछे बहोत बड़े-बड़े पेड़ उगे हुए हैं।

कुछ छोटे-छोटे पौधे हैं एक सफेद कलर की गाड़ी खड़ी हैं और पीछे दो चार मोटरसाइकिल खड़ी हैं।

इस चित्र में महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल लिखा हुआ है। सामने इंग्लिश मीडियम स्कूल है। यहां पर पुलिस लाइन जैसलमेर लगती है।

छोटा सा कमरा बना हुआ है एक दीवार बनी हुई है पत्थर की--

स्कूल में कुछ बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे है।

गाड़ियों के पीछे घर बने हुए हैं। यहां सामने--